कई वो के प्रोडक्ट्स रखे हुए एक स्लैब में--

बापटिस्ट चर्च नजर आ रही है जो की फूली डेकोरेटेड है और वहां पर कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं और एक पुरुष से पीछे से बात करते हुए भी जाते हुए नजर आ रहा है।

जैसा कि आप देख है यहां पे--

नीचे में ब्लू कलर की कवर की गई हुई है और बाहर में कंटेनर्स रखे हुए हैं जिसपे पेप्सी कोको कोलाज लिखे हुए हैं।

जिन्होंने पर्पल कलर के टी शर्ट पहनी है और ब्लैक कलर का जीन्स पहना है और जो शूज है उनके सफेद रंग की है।

और दूसरी ओर इनके पास पेंपलेट्स लगी हुई है जहां पर पैन कार्ड सुविधा माइक्रो ए_टी_एम बैलेंस इंक्वायरी मिनी स्टेटमेंट --